ये एक सुपर मार्केट जैसी दुकान देख रही है जिसमें कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं।

शादी में खाना बनाने का --

जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन का फोटो --

मेडिकल चेक अप भी --